यह कोई कपड़ा का दुकान लग रहा है। ये तो खिलौना का दुकान है। ढेर सारा यहाँ खिलौना है।

यहां एक बस्तर डेरी फार्म है जिसमे कि किराना दुकान लग रहा हैं ओर यहां सारे सामान मिलते हैं।

हां पर एक फोटोग्राफी शोरूम लग रहा है।

वहाँ पे ढेर सारे बच्चे हैं ओर छोटे-छोटे लड़के-लड़कियां भी हैं ओर ये सब स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं सभी कॉपी मे कुछ बना रहे हैं।

जिन पर तीन लोग बैठे हुए हैं तीन अंकल भी भैये भी हैं।

और ये चावल फैक्ट्री में तैयार होता है और यह धान से होता है। इसके खादने में बहुत मजा आता है। हर तरह की हर क्वालिटी के आते हैं। इसका वाइट कलर भी है चावल का।

यहां एक प्रोग्राम लग रहा है जैसा कि प्रोग्राम हो रहा है और ये एक लेडिज है जो अपने मुह को फाड़ी हुई है ओर हाथ मे लाल-लाल पेंटिंग कि हुई है और पेर मे भी--

और ये आंटी लोग हाथ को सर पे रखी हुई है एक हाथ को अपने पैर पे रखी हुई है और काफी तगड़ी पोज में है और नीचे काफी--

ओर ये लोग हाथ मे कुल्हाडी लेकर घूम ने ऐसा लग रहा है ये लोग पौधा लगाएंगे।

फ्रॉक के कलर येलो है ओर ये लड़की अपने काम पे ध्यान पे दी हुई है। एक चेयर भी है।